जमीन पर ट्रायंगमील मशीन लखी है।

तीन लड़के और एक औरत एक्सरसाइज कर रही हैं।

सामने एक खपरैल का घर बना है।

सामने एक आदमी कबाब बना रहा है।

ऊपर की छत लोहे की रॉड और पन्नीक से बनी हुई है।

सामने नीले रंग की कांच की खिड़कियां लगी--

एक आदमी साइकल पर बैठा और दूसरा बगल में खड़ा है।

ये एक साड़ी सेंटर की दुकान है।

लाल और नीले पीले रंग के पोस्टर लगे हैं।

ढेर सारी लोहे की कुर्सियां रखी है।

ढ़ेर सारे गमले और हरे रंग के पेड़ पौधे --

ऊपर की छत सफेद और लाइट लगी है।

ढेर सारी कांच और लोहे की खिड़कियां और लोहे के गेट लगे हैं।

ये एक बड़ा सा शादी का हॉल है जिसमें ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं।

हरे रंग के घास और ढ़ेर सारे फूल लगें हैं।

ढेर सारी मशीने लोहे की रखी हुई हैं।

फूल और घंटी और आरती की थाल रखी हैं।

हरे रंग के बड़े बड़े पेड़ और बाइक खड़ी है।

लोहे के पीले रंग के स्टैंड रखे हुए हैं।

लाल रंग की चुनरी और फूलों से सजावट है।

ढेर सारी कुर्सियां और टेबल रखे हैं।

ये एक बड़ा सा व्हाइट और चॉकलेटी कलर का कॉलेज है।

ऊपर की छत क्रीम कलर की और लाइट लगी है।

सामने एक लाल रंग का बोर्ड रखा है जिस पे लाइब्रेरी गुरुकुल स्टुडी जोन लिखा है।

एक औरत हाथ में सूप उठाए सर पे रखी हुई है।

हरे रंग की गैलन और पानी का गुलाबी रंग का डब्बा रखा हुआ है।